अह घेरा बना कर बैठे है खाना खा रहे हैं कुछ लोग अपना--

टॉवर जैसा कुछ खरा है और यहाँ पे एक पहाड़ है जो कि जो कि बहोत सारा --